बोहत ही अच्छा अच्छा घर भी छे।

इ एगो योगा दिवस के तस्वीर छै बहुत सारा आदमी योगा कर रहलै हन।

इ एगो दफ्तर के तस्वीर छै जहाँ आदमी काम करे छै बहुत ही सारा सामान सब भी छै |

एगो सीढ़ी भी लगल छै बहुत ही अच्छा वीर छै बहुत सारा आदमी सब है |